टायरो की दुकान है जहाँ पर बड़ी-बड़ी टायर रखे हुई है जहाँ पर उधर पीछे बड़ा सा घर बना हुआ है।

यहाँ कुछ बच्चे बैठे योगा कर रहे है जिन्होंने एक गोला बना रखा है और बीच मे हाथ ने पैरो को अपने हाथो से पकड़ रखा है।